और ग्रीन कलर के जस्ट बोर्ड के बाजु में एक वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है और पीछे एक घर दिख रहा है।